और एक जाली लगी हुई है एक खंभा लगा हुआ है खंभा में एक अ डोरी दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी

काफ़ी सारे कभर पिंक से कभर को लिया हुआ है और वो काटता हुआ दिखाई दे रहा --

एक स्टेशन है जिसमें ट्रेन पूरे स्टेशन में ट्रेन खड़ी है और स्टेशन के दोनों तरफ प्लेटफार्म है।

एक बंगला है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमे दो क्रिसमस ट्री बड़े-बड़े पो पेड़ दिखाई दे रहे है।